टायर टंगा हुआ है यहां पे कुछ फ्रेम लगाए हुए नजर आ रहे हैं स्विच नजर आ रहा है पानी की बोतल नजर आ रही है।

यहां पर एक मंदिर है मंदिर यहां पे लाइट नजर आ रही है ।

आजू बाजू बिल्डिंगे नजर आ रही हैविंडो नजर--

के विंडो नजर आ रहे हैं यहां पर हर स्टंप लगा हुआ नजर आ रहा है।

ब्रश नजर आ रहे हैचोकोज़ नजर आ रहे हैनोटबुक नजर आ रहे है ।

यहाँ पे रक रूम है ऊपर फैन नज़र आ रहा है लाइट नज़र आ रही है।

नजर आ रहा है प्रेम नजर आ रहा है ।

यहां डस्टबिन है बैनर लगाए हुए हैं यहां--

यहाँ पर एक शॉप है इसको यहाँ पे ऊपर आसमान नजर आ रहा है लाइट नजर आ र --

यहाँ पे फेविकोल है गम है ब्रश नज़र आ रहे हैं।

यहां पर कप एंकर यहां शॉप है यहां एंकर पे कपड़े टंगाए हुए हैंजो रेड ग्रीन वाइट ब्लैक --

यहाँ पर एक ऑफिस नजर आ रही है यहाँ भरी हुई नजर आ रही है।

रही है यहां पर ऊपर आसमान नजर आ रहा है दरख्त नजर आ रहे हैं।

वाश कार वाश कर रहे हैं कार की विंडो नजर आ रही है।

और यहां पर नीचे कार्पेट भी चाहे हुए हैं यहां पे जीम रूम दिख रहा है यहां पर विंन्डों नजर आ रही है ।

लिखा हुआ है पीछे कार नजर आ रही है बाइक नजर आ रही है ऊपर आसमान नजर आ रहा है दरख्त नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक बच्चा है वह फोटो खींच रहा उन पर आसमान नजर आ रहा है दरख्त नजर आ रहा है।

नीचे रखे हुए हैं कुछ हुए हैं यहाँ स्टैंड नज़र आ रही है लाईट नज़र--

रोज नजर आ रहे हैयहाँ पर कोल्ड्रिंक नजर आ रही है।

यहां पे घर टाइप ऊपर चलने के लिए सेड़ियां नजर आ रही है।

फॅमिली रेस्टॉरंट हैस्पेशलिटी वेज एंड नॉनवेज ।

यहाँ पर एक शॉप है यहाँ पर चेयर नजर आ रहे हैं बॉक्स बच्चों गाड़ी नजर आ रही है अलमारी नजर --

स्लाइड नजर आ रही है यहाँ टेबल चेयर नजर आ रहे हैं फर्निचर नजर --

यहाँ पर बैनर लगाए हुए नजर आ रहे हैं ये स्कूल है यहाँ पे इसमें --

ऊपर आसमान नजर आ रहा है वाय नजर आ रहा है दरख्त नजर आ --

कई सारे बुक्स नजर आ रहे हैं यहां एक्सपायरिंग --

यहां पे एक आदमी नजर आ रहा है यहां पे प्राइस के साथ लिखा हुआ नजर आ --

फैमिली नजर आ रहे हैं फोकस नजर आ रहे हैं फ्रेंड नजर आ रहे--

ऊपर आसमान नज़र आ रहा है पीछे से टावर नज़र आ रहे हैंवायर नज़र आ रहे है कम्बा नज़र आ--

ए_एफ_सी_ए_टी एस_एस_सी फिर बहौत सारे बुक्स नज़र आ रहे हैं यहां पर।

यहां पर पेट्रोल पंपर है पेट्रोल पंपल कई सारे लोग हैं ।

कुछ लोग ब्लैक पहन कर आये हुए हैं कुछ लोग रेड शर्ट वाइट शर्ट ग्रीन --

यहां एक ऑफिस है ऑफिस के ऊपर बैनर लगा हुआ है हरिजन ग्लोबल अकेडमी --

लिखा हुआ है बैंक भी नजर आ रहा है ऊपर ए_सी नजर आ रही है विंडो नजर आ रही--

यहां पे पॉट्स नजर आ रहे हैं ।

आ आदमी है दो आदमी है जो पत्थरों के अंदर है वो सेल्फी खींच रहे हैं यहां पे एक आदमी--

यहां पर बड़े-बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं ।

यहां पर दो इंजीनियर वो किसी फोटोग्राफी ले रहे हैं ।

दरख्त नज़र आ रहे हैं वायर नज़र आ रहे हैं ।

क्या है यहां पर दो शॉप नजर आ रही है ।

ऊपर वा_एस लिखा हुआ नजर आ रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है।

नजर आ रहे हैं सिड़ियां नजर आ रही हैं ऊपर लाइट नजर आ रही है ।

बाहर फूल नजर आ रहे हैं एक डोर नजर--

यहां पर दो ऑटो खड़े हुए नजर आ रहे हैं ।

ऑटो का कलर ब्लू रेड येलो कलर का है ।

आदमी मास्क लगाया जा रहा है एक आदमी सर पर टोपी पहनकर कॉल कर रहा है यहाँ डस्टबिन --

नजर आ रहे हैं लाइट नजर आ रहे हैं कैमरे नजर आ रहे हैं ।

यहां पर एक रेस्टोन है रेस्टोन में लाइट नजर आ रही--

सारी चीजें नजर आ रही है टेबल नजर आ रहे हैं टेबल के ऊपर कपड़ा ढापा हुआ नजर आ रहा है बेड रेस्ट नजर आ रहे हैं ।

दिए लगा रहे हैं यहाँ--

एक मूर्ति नजर आ रही है फराराम से--

यहां पर कुछ भाजी कुछ है यहां पर--

वहाँ पहर पानी पूरी नजर आ री है।

सोच रहा है लोग बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं ।

यहां पर पानी की बोतल नजर आ रही है पानी का डिब्बा नजर आ रहा है छेर रखी हुई नजर आ रही है ।

बीच नजर आ रहे हैं स्टैंड है स्टैंड के अंदर कई सारी चीजें रखी--

काम करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे एक वर्कर सेमेंट करा रहा है पानी के--

इर्द गिर्द घर नज़र आ रहे हैं विंडो नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े दरखत नज़र आ रहे हैं।

यहां पे इयर ऑफ द डिजिबल--

चमता लिखा हुआ नजर आया चेयर नजर--

ब्रेड्स की पैकेट हैं यहाँ पे सरफेक्सल है।

पर कई सारी चीजें रखे हुए नजर आ रहे हैं।

नमक रखा हुआ नजर आ रहा है ।

आ रहा है नीचे खाई नजर आ रही है ।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है यहां--

बियर रखा हुआ है यहां पे सामने दो छेर रखी हुए--

यहां पे आर_वी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बैंगल बैंगलस र काजर रखा हुआ है ।

यहां पे टेबलेट्स भी रखे हुए हैं ऊपर सॉफ्ट --

एम ऊपर साइड नाव रखी हुईं है।

येलो रेड ब्लू करते हैं ।

यहां पे एक फूलों की शॉप है जो फूल बना रहे हैं फूलों को प्रो रहे हैं ।

गा हुआ है यह पे सारे प्रोडक्ट्स है।

यहां पर बॉक्स इसमें भी रखा हुआ है यहां पर हेड एंड शोल्डर --

यहां पर एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है कंस्ट्रोलर सर्विस --

गिलास है यहां पे बर्नी है उसके--